इसको चेकोरेट किया गया है और साथ में खाने के लिए--

और छत के ऊपर लाइट जग रही है और एक घंटी लगी हुई है।

हॉल में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं ब्वॉयज़ बैठी हुई हैं गर्ल्स बैठी हुई हैं चेयर पर बैठी हुई हैं और एक--

करने के लिए बैठे हुए हैं और दुकानदार वाला दिखा रहा है।

और लाइटें जलती हुई दिख रही है और एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है और यहां--

और साथ में सूरज की सनराइजर्स दिख रही है उसके पार एक बहोत बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

ये एक झूलों वाले पार्क का दृश्य है यहां पानी वाले झूले हैं।

झूले झूले और पानी वाले झूले हैं और एक दो पर्सन यहां दिखाई दे रहे हैं वो--